तालाब दिखाई दे रहा है हरी-हरी घाँस दिखाई दे रही है पेड़ लगे हुए हैं लंबे-लंबे बादल दिखाई दे रहा हैं।